ये लोग फ्रॉड करता है। पैसा देने के टाइम ब्लॉक कर देता है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं। इसके आगे नील कलर बोर्ड पर बलाल नाम का बोर्ड दिखाई दे रहा हैं। और इस बड़ी बिल्डिंग के आगे बहोत सारे बाइक और एक ट्रॉली दिखाई दे रही--

मंदिर के पीछे से सूर्य उदय दिखाई दे रहा और आस पास बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे